दो इसमें सफेद है ब्लैक है ठीक है एक कार खड़ी है वो भी व्हाइट कलर की है।

इस फोटो में सामने दिख रहा है गोल्डन और ब्लू कलर से जो है काम किया हुआ है एक यहां पर चेयर दिखाई दे रही है।

ठीक है पेड़ पौधे है और आगे और भी लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं ठीक है मिट्टी है घास है पेड़ पौधे है दिन का समय है।

काफी सारी एक्टिवा खड़ी है बाइक खड़ी है एक कार भी खड़ी हुई है ठीक है साइड में एक दिख रहा है हॉस्पिटल ट्वेंटी फोर इंटू सेवन इमरजेंसी ।

फर्श पे पत्थर डला हुआ है।

सामने एक लाल रंग का बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है एशियन पेंट्स जनता पेंट ।

कोई पूजा चल री है क्योंकि बहोत ही सारे लोग दिखाई दे रहे--

इस फोटो में घास दिखाई देरी है शटर दिखाई दे रहे हैं कट्टे है मिट्टी है ठीक है एक बाइक खड़ी हुई है पीछे।

दिन का समय है फ्लावर्स लगे हुए हैं चप्पल भी है।

अ पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है। बड़ा सा पे टी_एम का क्यू_आर लगा है चेयर है।

ठीक है और सारे लड़के खड़े है ये एक दो लड़कियां भी खड़ी है यहा पर जिसने--

ठीक है और यहां पे दिन का समय है लाइटें लगी हुई है ठीक है अ स्विच बोर्ड दिखाई दे रा है।

और फ्लोर पे देखो कारपेट बिछा है पिंक और ऑरेंज कलर का कारपेट लगा हुआ हैं।

और एक यहां पर क ये बस खड़ी हुई है जो रेड कलर की है।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

घर नज़र आ रहे है सड़क है पेड़ पौधे है ठीक है।

मिट्टी दिखाई दे रही है बैठने के लिए चेयर दिखाई दे रही है।

और लटकने वाला झूला है और पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

और कुछ घर दिखाई दे रहे हैं सामने लिखा हुआ बिंदाल--